इन पिलर को बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है इस बिल्डिंग का कलर पीछे इसमें बड़े बड़े गेट्स भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ की जमीने पक्की दिखाई दे रही है बहुत ही खूबसूरत सी खंडात का एरिया दिखाई दे--

यहाँ पर बीच में एक बड़ा- सा एडवर्टाइजमेंट का पोस्टर लगाया गया है आसमान नीला दिखाई दे रहा है बादल छाए हुए है बहुत ही खूबसूरत है प्यारा सा --

तीन चार पिलरो में लाइटे जल रही है यहाँ पर लेम्पोस भी दिखाई दे रहा है और आस पास बिल्डिंगे दिखा दे रही है बड़े-बड़े टॉवर् --

एक खूबसूरत सा किला दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारी लकड़ियाँ सुखी लकड़ियाँ दिखाई दे रही हैं हरे-भरे पेड़- पोधे दिखाई दे रहे हैं पत्तियां दिखाई दे रही--

लाल दिखाई दे रहा है इसमें आसमान नीला दिखाई दे रहा है बड़े-बड़े टॉवर दिखाई दे रहे है बहुत सारी तारे भी दिखाई दे रही और यहाँ पर कुछ सूखे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सा प्यारा सा मैदान है।

खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है इस बिल्डिंग की कलर व्हाइट क्रीम और चॉकलेट है इस बिल्डिंग के ऊपर टाइल भी लगाए गए हैं और सही शीशे भी दिखाई दे रही गेट भी दिखाई--

बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग दिखाई दे रही है छोटी बड़ी खिड़कियाँ दिखाई दे रही है यहाँ पर एक बड़ा सा गेट दिखाई दे रहा है आस पास लैम्प पोस्ट लगाए गए है सीढ़िया भी दिखाई दे रही हैं ।

दिखाई दे रही पानी बहुत ही ब्लू दिखाई दे रहा है बहुत ही साफ दिखाई दे रहा हैं आस पास बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है बड़े-बड़े खंबे भी दिखाई--